बहुत सारी मछलियाँ रखी हुई दिख रही हैं ऑरेंज कलर व्हाइट कलर ब्लैक कलर रेड कलर आसमानी कलर दिख रहे है रेड कलर दिख --

पीले कलर के ऊपर माला लटक रही --

दुकान दिख रही है स्टूल बेंच रखी हुई दिख रहे है बॉक्स रखे हुए दिख रहे हैं डब्बे रखे हुए दिख रहे हैं लोहा भी दिख रहे हैं लोहा का सामान रखे हुए दिख रहे है पंखे --

पड़े हुए दिख रहे हैंमशीनों में लाइट लगी --

बैलून लगे हुए दिख रहे हैं रेड कलर के वाइट कलर के बैलूनों पे नाम लिखा हुआ दिख रहा है एक चेयर लगी हुई दिख रही मकान दिख रहा है।

व्हाइट कलर की --

मशीने दिख रही है जांच करती हुई दिख रही है एक परदे दिख रहे जामुनी कलर की खिड़कियाँ दिख रही --

और पिंक कलर आसमानी जामुनी कलर ग्रीन कलर ट्रॉफी में रेड कलर की मालाएं दिख रही हैं।

बिल्डिंग दिख रही है क्रीम कलर की उसमें बैनर लगी हुई दिख रहा है साइकिल खड़ी हुई दिख रहे है बहुत सारी टॉवर टंगा हुआ दिख रहा है।

बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है लाइटें लगी दिख रही है बादल मे भी कलर दिख रहा है पिंक नीला आसमानी पीला कलर --

सजावटे दिख रही है फूल वगैरा दिख रहे है दो-तीन दिल बने हुए दिख रहे मकान दिख रहे लाइट लगी दिख रही उसमे मरकरी दिख रही एक जेंट्स खड़ा हुआ दिख रहा पर्दे --

बना हुआ दिख रहा है टाइल्से लगी दिख रही है नीचे पीला कलर दिख रहा है मे जामुनी कलर दिख रहा है व्हाइट कलर दिख रहा है रेड कलर दिख रहा है अलमाड़ी मे ।